इस साईड में तो यहाँ पे दोनों साईंड बृक्ष है पेड़ है तो वहाँ पे उधर ट्रक जा रहा है काफ़ी अच्छा जगह है।

यहाँ पे एक गेट अथी लगा हुआ है बंद है क्यों रूम ? सेंट्रल बैंक है काफ़ी अच्छा है।

ये पूला तो लगता है जा टूट गया है पूरा पानी से लगा हुआ है दोनों साइड खंबा जैसा दोनों साइड दिया हुआ है।

उधर खेती खेत लोग करता है दोनों साइड पानी है रोड जो है जाता है।

यहाँ पर हिरन का फोटो है जो हिरन का मूर्ति बनाया हुआ है।